ये एक ओम इलेक्ट्रीशियन शाप है यहां पे आपको कूलर फ्रिज एल_सी_डी --

और लेफ्ट साइड राइट साइड में ग्रीन कलर का कारपेट के दीवार पर लगा हुआ दो पंखे भी है।

काफी ज्यादा है और रोड जो ब्लैक कलर का है।

ये देखने में कोई तालाब है जिसमें सीढ़ियां लगी हुई है बीच में काफी पानी है।

मोहल्ला है यहां पे एक अह ये ऑरेंज कलर का भवन है यहां पे ऊपर में जो आसमानी कलर में लिखे हुए हैं।

यहां पे देख पा रहे सीमेंट सन सानने वाला मशीन है।

ये किसी तरह का फैक्ट्री दिख रहा है जिसमें टीन से घेरे हुए है काफी--

लोहे के गेट वगैरह भी बनी हुई है और लेफ्ट साइड में राइट साइड में लकड़ी के टुकड़े काफी पड़े हुए है।

ठीक है और राइट साइड में ग्रीन कलर का पेड़ है।

और यहां पे टेबल्स व्हाइट कलर का है जिसमें पा वाटर बॉटल रखे गए हैं।

व्हाइट और ब्लैक लाइनिंग में टी शर्ट है जिसमें ब्लैक जींस पेहनी है।

और एक जेंट्स जो है वो आसमानी कलर का शर्ट पेहनें हुए है जो साइकिल पे एक थैला लेके जा रहे हैं।

कलर का जो साइड में बिल्डिंग्स है ऊपर एक टावर है ग्रीन कलर के पेड़ भी नजर आ रहे हैं और येलो कलर का ऑरेंज येलो में--

यहां पे देख पा री हुँ कि एक पेट्रोल पंप है यहां पे एक --

और यहां पे काफी लोग हैं यहां पे तीन चेयर्स हैं उधर से एक लेडीज अपने बच्चे को ले के आ रही है।

वहां पे काफी तार वगैरा लगे हुए हैं।

बारिश के साइड में देखा जाए तो मीट मसाला वगैरा--

यहां पे देख पा रही हूं एक बड़ा सा व्हाइट कलर का गेट है अ लेफ्ट साइड में ग्रीन व्हाइट का बिल्डिंग है जिसमें मैरून कलर का--

यहां पे एक जो है वो पीला ढलाई कर रहे--